कुछ लेडीज जेन्स जेन्स इकठा हुए है सामने तिरंगा झंडा भी लहर रहा है।

कम्प्यूटर भी रखा गया है दुकान में कुछ व्यक्ति भी खड़े है ऊपर--

ऊपर छत भी दिखाई दे रहा है चारो तरफ से हा--

सामने बिल्डिंग है बिल्डिंग में बहोत सारी खिडकिया और दरवाजे दिखाई दे रहे हैं।

सड़क के किनारे एक दुकान है दुकान के ठीक सामने एक बाइक खली खड़ी है बाइक ब्लैक कलर की है दुकान के बहार बोहोत सारे सामान रखे गये हैं।

दुकान के ऊपर बोर्ड भी लगा है बोर्ड पे मनु भाई बेकरी भी लिखा गया है दुकान के अंदर बहुत सारे खाने पीने वाला समान देखने दिखाई दे रहा है उम्म--

फूलों को रखु सुरक्षित रखने के लिये ऊपर से सेट भी लगाया गया है।

दीवार कलर किया गया जो सफेद कलर का--

सामने अ कांच लगी हुई है कांच में अनेक कलर दिखाई दे रहा है कांच के ठीक बगल में ऊंची बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग के अ अगर--

उम्म सीढी के बगल में सो प्लांट भी लगे हुँए है।

उम्म गमले में छोटे छोटे पोधे भी लगे है चारो तरफ पेड़ पोधे दिखाई दे रहे है बिल्डिंग कि दीवार कलर कि गई है।

यह कुछ जल व्यक्ति खड़े हुए है जो मंदिर के ठीक सामने उम्म खड़े है।

प्रतिमा बनाए गए प्रतिमा क व्हाइट कलर का ड्रेस पहनाया गया उपर--

मुकुट भी पहनाए गए उसके पीछे बहुत सारी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

बहुतसी गाडी आती जाती रहती है जिसमें पेट्रोल डीजल --

ऊं सामने एक व्यक्ति माइक लेकर कुछ बोल रहे हैं दरवाजों को भी सजाया गया हैं चारों तरफ से खिड़कियों पर ऊं बैलून लगा कर सजाया गया हैं।

सभी प्रकार के आइटम लिखने से पढने से समन्धित मिलते हैं।

येस फाईन भी लगा हुआ है ऊपर दीवार पर बोर्ड भी लगा हुआ है।

उम् दीवाल बोर्ड पर कुछ लिखा गया है दो शुबल लतकाय गये हैं।

सड़क पर गाड़ी खड़ी है गाड़ी ग्रे कलर की है गाड़ी के बगल में एक व्यक्ति खड़ा हुआ है गाड़ी के ठीक सामने टीन के शेड जैसे लगाये गये हैं उम्म उम्म--

पिंग पीछे परदे के पीछे पेड़ भी दिखाई दे रहे है।

सो प्लांट भी लगे हुए हैं। जमीन पर हरी-हरी घास भी दिखाई दे रही है। पीछे--

सडक पे एक लाल रंग कि एक मोटर साइकिल खड़ी है मोटर साइकिल कुछ दूर पीछे --

बेड शिट टू वे वाईट कलर कि बेड शिट लगी हुई है जिस पे ग्राहक बेठ भी सकते है।

चारो तरफ से खुला आसमान दिखाई दे रहा है वाईट टोर कि फोर विलर भी खड़ी है।

हम यहाँ पे बहत सरे रंग बिरंगे के गमले है गमले पे फूल लगे हुए है फूल अनेक प्रकार की है सरे फूल प्लास्टिक की ही है पत्ती भी प्लास्टिक की ही लगी हुई है।

नदी के किनारे सुखी घास भी है ऊपर आसमान साफ़ दिखाई दे रहे है चारो तरफ हरे भरे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे है।

सामने सीढी बना है सीढी के बगल में पेड़ पोधे भी है सीढी से ऊपर --

सीढ़ी के ठीक सामने बिल्डिंग भी है बिल्डिंग बहुत ऊंची है बिल्डिंग के बगल में भी पेड पौध दिखाई दे रहे है ऊपर आस्मांन भी दिखाई दे रहे है चारो तरफ से भी --

यह तलाब है तलाब के चारों किना किनारे पक्के बने हुए हैं।

ऊपर खुला आसमान भी दिखाई दे रहा है।

दुपहर को अम्म कलर किये गया हैं वाइट और ब्राउन से कलर किया गया है चारो तरफ से पेड़ पौधे दिख रहे है।

यहां पर एक मोटरसाइकिल खड़ी है मोटरसाइकिल रेड कलर की है ऊपर जाने के लिए सीढ़ी बना है सीढ़ी के दूसरी तरफ--

छोटे छोटे गमलो में पोधे लगे हुए है --

सामने ड्रम लेकर एक दो व्यक्ति खड़े हुए है दोनों व्यक्ति एक एक ड्रम पकड़ के खड़े हुए है पाइप से --